और दाएं तरफ यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक पोल वगैरह लगा हुआ है और यहां पर सामने कुछ पत्ता वगैरह दिखाई दे रहा है और बाएं तरफ कुछ महिलाएं बै --

और दाये तरफ भी बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे है चारो तरफ कपड़े से कपड़े है। बहुत सारे छोटे बच्चे का बड़े का कपड़ा दिखाई दे रहा हैं।

इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो एक दूल्हा है दुला दुल्हन है और यहाँं पर फूलों से सुंदर करके पेंडल सजाया गया है। बाये तरफ भी कुछ पा पेंडल वगैरा है ऊपर फूल है।

और पीछे नीला कलर का एक हाउस दिखाई दे रहा है और पीछे घर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तीन मजदूर है एक मजदूर रेड कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है।

पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि एक बंदे का मैंसेज किया जा रहा है। यहाँं पर एक बंदे अरे एक बंदे लेटे हुए है। उसको एक ऑक अंकल मैंसेज कर रहा है और दाएँ तरफ --

पिक्चर में आप लोग देख सकते है। एक मैडम जोकि अपनी क्लास करा रही हैं ट्यूशन की और यहाँ पर बहोत सारे मिल के बच्चे मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं।

और बाएं तरफ कुछ लिखा हुआ है जो की धुंधला धुंधला है और बाएं तरफ बहुत सारी चीजे दिखाई दे रहा है। सामने आसमान दिखाई दे रहा है तार तारे दिखाई दे रहा है।